पत्ते की दुकान लगी हुई है।

रस्ते पे एक स्कूटरी खड़ी है।

स्टंप लग रहे हैं पर--

गन्ने बोलते हैं एक खंबा खड़ा है।

बीच वाली ने गुलाबी साड़ी पहन रखी है।

बहुत सारे पत्थर पड़े हैं दो गेट रखें हैं।

बच्चों के आगे की कॉपी किताब रखी हैं।

ऊपर एक दूल्हा खड़ा है दूल्हे के सामने बहू खड़ी है।

एक छोटा बालक खड़ा है इनमें सेहरा लगा रखा है।

छोटा सा गमला रखा हुआ है।

रेलिंग लग रही है दुकान दो हैं।

एक औरत गिटार बजा रही है।

साथ में बेल्डिंग की मशीन ले रहा है।

गाड़ी और मोटरसाइकिल का बोर्ड लग रहा है।

एक भारत का झंडा लग रहा है।